होटल में जा कर ठेहर भी सकते हो ठेहर कर अपना टाइम पास कर सकते है टाइम पास कर बहुत कुछ कर सकते हो समझ रहे हो ना अंदर क्या क्या कर सकते हो नीचे पार्किंग लॉन है पार्किंग में बाइक लगाई है स्कूटी लगाई है लंबरगीनी लगा ली--